यहाँ पे बहुत सारे लोग घुमने के लिए जाते हैं।

पार्क का फ़ोटो दिखाया गया है जहाँ पे दो ठो मूर्ती को भी बनाया गया है और यह पार्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है।

यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते है चाय कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ का कॉफ़ी दूर-दूर तक फेमस है बहुत अच्छा लगता है पीने मे--